एक व्यक्ति के हाथ में पाइप है जिससे वो कार के ऊपर पानी डालता हुआ नजर आ रहा है।

अलमारी के ऊपर दो कांच की शीशी दिखाई दे रही है।

ये इमेज एस_बी_आई बैंक के बाहर की दिखाई दे रही है।

दो पानी के मटके रखे हुए है यहां एक गिलास रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में कहीं जंगल में खड़ी हुई गाड़ियां नजर आ रही है जिसमें सेंटर फ्रूट की--

ये बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है। कोकाकोला का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

पोछे रखा हुआ नज़र आ रहा है छोटी छोटी बॉले रखी हुई नज़र आ रही है बेल्ट लखे हुए नज़र आ रहे हैं।

कोई नजर आ रहे हैं अह पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही है।

कमरे मे ए_सी लगा हुआ नजर आ रहा है एक बल्ब दिख रहा है।

ये पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक दो व्यक्ति बैठ कर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं गमले लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पर बहुत सारे गमले रखे हुए नजर आ रहे हैं।

ये इमेज एस_बी_आई बैंक के बाहर की नज़र आ रही है जहां पे बाइक स्कूटी खड़ी हुई नज़र आ रही है एक व्यक्ति बैग टांगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये इमेज किसी ऑफिस की लग रही है जहां पर चेयर लगी हुई नजर आ रही है स्प्रे बॉटल रखी हुई दिख रही है भगवान--

दिखाई दे रहा है जिसमें एक पलंग लगा हुआ नजर आ रहा है।

अंदर फ्रिज में ठंडे की बोतलें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।